यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी --

योगा कर रहे हैं और--

यह एक पहाड़ी इलाका है जो जहां कोई टेररिस्ट घूमने गया हैं।

गार्डेन साइड की फोटो ली गई है।

काफी सारे पेड़ पौधे--

और यहां काफी सारे लोग खी--

जिस जिनका नाम है।

सारी पिक्चर है।